यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने में ऐसा मालूम पड़ता है कि यह कोई फर्नीचर के शोरूम का चित्र है ।

यहाँ पर एक पिक्चर नजर आ रहा है देखने में ऐसा प्रतीत होता है की यहाँ पर किसी की शादी की मंडप को सजाया गया है।

बिल्डिंग के बाहर कुछ हरे-भरे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है बिल्डिंग का कलर है --

वेन टाइप गाड़ी भी दिखाई दे रही है और दो चार बाइक भी नजर आ रहे है और उस पर लोग गाड़ी चला कर जा रहे है |

बहुत ही सारी बसे नजर आ रही हैं जो कि येलो कलर की है और यहाँ पे बहुत --

एक हरा-भरा मैदान है बहुत सारे पेड़-पौधे है ।

जो कि येलो और ब्लू कलर का। यहाँ बोहोत सारी खिड़की हैं एवं यहाँ पुलिस की गाड़ी है।